यहाँ पर बहोत सारी गंदगी पड़ी है जो कि पानी के अंदर है पर बहुत लंबा है।

एक के हाथ पर सफेद कलर का कपड़ा बंधा है जमीन पर ईंटे रखी है ईंटों का रंग भूरा है।

यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है जिसके हाथ में फोन है यहाँ पर गन्ने रखे हैं।

पेड़ों का रंग हरा है तथा यहाँ पर दूर दूर तक पेड़ लगे है।

स्लेटी है यहाँं पर एक दरवाजा लगा है जो जाली नुमा है।

चर्च बहुत सुंदर बना है ये झोपड़ी नुमा बनाया गया है इस--

इनके हाथ ऊपर की ओर है तो नमस्कार कर रही है तथा एक पाँव पर खड़ी हैं।

बहुत सारी पुस्तकें लगाई गई है जमीन का कलर सफेद हैं।

जमीन का रंग भूरा तथा पीला है जो चद्दर बना हुआ है।

सजावट है यहाँ पर एक छोटा गमला रखा है जो भूरे रंग का है उस पर एक छोटा पौधा लगा है जो हरे रंग का--

क्रीम रंग की है यहाँ पर बहुत बड़ी -बड़ी सीढ़ियाँ बनी है जिनका रंग थोड़ा- सा --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर दिख रहै हैं पत्थर का रंग गुलाबी स्लेटी है यहाँ पर हरी -हरी बड़ी-बड़ी--

यहाँ पर अलमारी है अलमारी का रंग काला है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां पर एक तालाब दिख रहा है जिस पर खूब सारा पानी भरा है यहां पर शिप्रा --

यहां पर जमीन का रंग काला है एक आदमी खड़ा है जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखें है |

यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है इंदिरा गांव गंगा तन मन चंगा --

यहाँ पर एक मेज है जिसका रंग भूरा है यहाँ पर शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

और आसमानी रंग के जूते पहने हैं दूसरा व्यक्ति ने काले रंग की कमीज पहने तथा काले रंग के हाफ पैंट पहनी है।

यहाँ पर बताशे दिख रहै हैं जो कांच के बॉक्स में बंद है यहाँ पर एक टंकी रखी है जिसका रंग --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक कारपेट बिछी है कारपेट का रंग लाल है उस पे सफेद कलर के बुँदे पड़े हुए हैं।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं जो की आराधना कर रहे हैं यह मुस्लिम समुदाय लगता है यहाँ पर --